बहुत सारी लाइटें जल रही है सड़क पर उजाला नजर आ रहा है।

दे रही है बकरी के चारे रखे हुए हैं।

डिब्बे में बहुत अच्छे तरीके से रखे गए हैं आज पास और भी रूम नजर आ रहा--

आस पास चारों तरफ घेरे हुए हैं।

मैं देख पा रही हूं यहां एक बहोत बड़ा मार्केट है और रेलवे पटरी भी यहां पर--

लगा हुआ है सामने एक आदमी शर्ट पैंट पहन कर खड़ा नजर आ रहा है चश्मा लगाया हुआ है।

चेयर रखी हुई है इस पर सोफे भी बने हुए हैं।

आस पास और सारे सोफे रखे--

मैं एक बड़ा गुफा है गुफा के अंदर--